और देखिए बहुत ही हरियाली भी है खेती में और बीच से थोड़ा जा रोड भी गया है मिट्टी का--

वे लोखन के समान भी दिख रहे है और ये जो मशीन दिख री है ये भी लोखन की ही दिख री हैं।

और यहाँ पे छोटी सी दुकान है और डिब्बे में बिस्किट वगैरह करके रखी गयी हैं ।

औरतों औरतों की संख्या यहाँ पे बोहोत ज्यादा दिखाई दे रही है बहुत ढ़ेर सारी औरतें पानी में खड़ी होके हाथ जोड़के खड़ी है और कुछ कोहरे टाइप --

है और यहाँ पे नाव में सबलोग बैठे है एक खड़ी हुई है और पानी दिखाई दे रहा है बहोत ही सुंदर लग रहा है पानी --